बाउंड्री के पास भी पेड़ पौधे हैं।

रोड पर एक बड़ी गाड़ी भी जा रही है वह वाइट कलर की है।

दुकान की दीवार का कलर व्हाईट है।

उसके के बगल में एक और दुकान है उसमें शटर लगा हुआ है।

यहां एक बड़ी बड़ी मशीन भी रखी हुई है।

ऊपर में प्लास्टिक का टप्पर लगा हुआ है।

यहां पेन ये सब भी रखा हुआ है।

नीचे में लोहेे की ग्रिल वाली गेट है।

ये बहोत सारे बर्तन दिखाई दे रहे हैं।

नाव में झंडे लगे हुए है नाव लकड़ी का बना हुआ है नाव मे भी व्यक्ति हैं।

कुछ महिलाएं पुरुष बच्चे नहा भी रहे हैं नदी में पानी थोड़ा थोड़ा है।